कुछ लाल है सफेद है भुरा है एक आदमी भी खड़ा है गाड़ी के पास बहुत सारे आसपास पेड़ पौधे हैं काफी हरियाली नजर आ रहा है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यह एक मॉल है जिसमें बहुत तरह तरह का सामान दिखाई दे रहा है कुछ प्लेट्स हैं कप हैं कटोरियाँ --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं दोपहर का समय है बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं कुछ लोग खेल रहे हैं कुछ लोग खड़े हैं।